इस तस्वीर में मुझे एक हाल दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ वाहन दिखाई दे रहें हैं।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

यहां मुझे कुछ दिखाई दे रहे है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ गमले दिखाई दे रहे है।